जो की एक आदमी एक इंची टेप से लेकर के वो नाप रहा है कुछ।

सामने यहाँ एक कुछ रथ-वथ निकल रहा।